और यह एरोप्लेन देखने में बहुत ही सुंदर है।

लगी है। यहाँ पे लोग जिम करके अपना शरीर बनाने के लिए आते रहते है और यह जिम देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।